इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बहोत बड़ी अ कारखाना है जहाँ पर कई सारे मशीन्स मौजूद हैं यहाँ पर बड़े-बड़े टेंक्स मौजूद है इनसका इस्तेमाल करके अ गाड़ियों में हम लोड करते हैं।

इस चित्र में हम जो देख रहे हैं ये एक डायनासोर राइड है जोकि बच्चों को बहोत ही ज़्यादा पसंद आता है जो --

चित्र में हम देख सकते है की यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मोजूद है जो की सरकारी बिल्डिंग हो सकती है आ सफेद बिल- बिल्डिंग है यहाँ पर कई सारी खिड़कियाँ और दरवाजे मोजूद है।

अ वैसे तो ये अ ऐसा लगता है कि यहाँ पर मंदिर मौजूद है जिसके दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं सीढ़ियो से उतरते दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बूढ़े सारे यहाँ पर मौजूद हैं।

और लगता नहीं है कि यह एक ही तरह का पेड़ है अलग-अलग र रसम के पेड़ होते हैं।

हैं जैसे कि हम्पी अ और दूसरे बेल्लूर हलेबीडु वगैरा वगैरा जहाँ पर कई सारे मंदिरें भी मौजूद हैं और --

चित्र में हमें अ बहुत खूबसूरती नजारा देखने को मिल रहा है | जहाँ तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राजा-महाराजा के किले मौजूद है।

यह ऐसा ब्रिज है जहाँ पर इंसान खड़े होकर अ सभी सीनरी देखते हैं जैसे कि अ इन छोटे-छोटे पत्थरों से इतनी अ --

जहाँ पर कई सारे सैनिक और दूसरे सारे स्तम्भ मौजूद है और यहाँ पर हम देख सकते हैं की अ सीधा-सीधा हमें किले का दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा ये।

इस चित्र में हमें कई सारी चीज़े देखने को मिल रही है ये हमें ज्यादातर दिवाली में मिलती है जो के बहोत ही ज्यादा बच्चों को पसंद आती है इसमें कई सारी अ चीजें मौजूद हैं जैसे कि सुसुरबत्ती है।